इस फोटो में बस नजर आ रही है इस फोटो में गाड़ी नजर आ रही--

इस फोटो में कार्टुन नजर आ--

इस फोटो में हरियाली नजर आ रही है। इस फोटो में पत्ता नजर आ र--

इस फोटो में पार्किंग नजर आ रही--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

इस फोटो में स्कूल नजर आ रहा है।

इस फोटो में साइकिल नजर आ रही है।

इस फोटो मे डी_जे नज़र आ--

इस फोटो में गेंदा नजर आ रहा है इस फोटो में--

फोटो में कार नजर आ रही है।

इस फोटो मे घाट नज़र आ रही--

इस फोटो में पत्ता गोभी नजर आ रहा है।

इस फोटो में टमाटर नजर आ रहा है।

इस फोटो में स्टेशन नजर आ रहा है इस फोटो में लोग नजर आ रहे है।

इस फोटो में लैपटॉप नजर आ रहा है।

तस्वीर में दवाई नजर आ रही है इस फोटो में फ्रिज नजर आ रही है।

इस फोटो में कुलर नजर आ रहा है।

इस फोटो मे मशीन नजर आ रही--